यह एक पुस्तकालय है जहां पर बोहोत सारे रंग बिरंगी पुस्तकें रखी हुए हैं इसमे एक हमें खाली चेयर जो कि काले कलर की दिख रही है ।

और बहोत सारे समान रखे हुए है और चार सीसे भी नजर आ रहे है।

इस तस्वीर में हमें एक बनता हुआ बहोत बड़ी सी इमारत दिखाई दे रही है जिसका कुछ बन चुका है कुछ हिस्सा और कुछ हिस्सा बनना बाकी है साथ ही पीछे हमें खुला आसमान दिखाई दे रहा है।

इस तस्वीर में हमें एक क किराने की दुकान दिखाई दे रही है उसके सामने एक दुकान है जिसका शटर बंद है और ऊपर हिन्दुस्तान का बोर्ड भी लगा हुआ है।

एक हमें रोड भी दिखाई दे रही है और इस तस्वीर के अंदर दुकान के अंदर हमें बहुत सारे बोरे और कु-कुछ चीज़ सामान रखे हुए दिखाई दे रहे है।

इस तस्वीर के अंदर हमें एक बोर्ड श्याम प्रसाद सिंह महिला कालेज का दिखाई दे रहा है उसके साथ एक लोहे का गेट और एक खुला छोटा सा लोहे का गोड दिखाई दे रहा है।